बेंच के ऊपर कुछ बॉटल पड़ी है और सास के डिब्बे पड़े हैं स्टील की बर्नी पड़ी है डिब्बे पड़े हैं।

सामने दीवारों के ऊपर ब्लैक कलर किया हुआ है और कुछ सफेद कलर से कुछ लिखा हुआ है।

इधर दो टैक्सी खड़ी है सड़क के उधर साइड सामने दुकानें लगी हुई है ढाबे लगे हुए है सब्जियों के और फलों के।

इस फोटो में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है पानी के अंदर ये घर बना हुआ है दो मंजिल ऊंचा।

नीचे एक बाहर आदमी बैठा है अंदर बेंच वगैरा लगी हुई है बाहर परदे लगे हुए हैं ऊपर जाने के लिए सी --

इस रूम के अंदर दीवार के ऊपर सफेद कलर किया हुआ है और सामने दीवार के ऊपर पंखा लगा हुआ है सफेद कलर का गोल साइज का।

नीचे कंप्यूटर पड़ा है माउस पड़ा है कीबोर्ड पड़ा है और नीचे कुछ अलग अलग संदूक बनी हुई है।

इस फोटो के अंदर दूर-दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पानी के अंदर कुछ सफेद-सफेद कलर की बूंद दिखाई दे रही है।

इस फोटो के अंदर सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग के ऊपर नीचे यहां एक मैडम खड़ी है।

रूम बना हुआ है रूम के इधर ये दुकानें बनी हुई है दुकानें लगी हुई है कुछ बाहर के साइड कुछ आदमी खड़े हैं।